पत्ते दिखाई पड़ रहे हैं पत्तों का रंग हरा है।

टेबल दिखाई पड़ रहा है जिसका रंग उजला है।

पीछे दो तीन पोस्टरे लगाए हुए हैं।

पेड़ के पत्तों का रंग हरा है।

टाइल्स का रंग ब्लैक है।

इस दृश्य में कुछ बच्चे हैं जो झूले झूल रहे हैं।

एक बड़ा सा शीशा दिखाई पड़ रहा है जिसपे उजला कलर का कुछ चमक रहा है।

इस दृश्य में चार पांच स्कूटी दिखाई पड़ रही है।

यहां पे बहुत सारी साइकले लगाई गई है।

एक दो बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं।

ढलान पे भी एक बोड़ा रखा हुआ है बहोत सारी पोस्टरे लगाई हुई हैं।

एक गदहा का रंग काला है एक गदहा का रंग ऑरेंज है।

पीछे बहोत सारे पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं।

पर जो कारपेट है उसे कारपेट का रंग लाल है।

एक ने बम्बर जैकेट पहनी हुई है और डेनिम ब्लू कलर की जींस --

यह किसी जिम के अंदर की फोटो है जहां पे एक पंचिंग बैग दिखाई पड़ रही है।

यह आस्र टेलीफोन के बाहर का फोटो है।

तिन्नों के टी_शर्ट और ट्राउजर के रंग अलर है अलग अलग है।

समानो मे कुछ बड़े बॉक्सेज है तो कुछ छोटे बॉक्सेज --